और फायर ब्रिगेड के लिए मतलब जहां पे आग लगी उसके लिए मतलब बेहतर रहते हैं जो फायर ब्रिगेड कहां पहुंच सकते हैं उन लोग--

अलग अलग कलर में मुनाफा कलर है ग्रीन कलर है।

पटरे ऊपर लगे हुए हैं कुछ पिलर दिख रहे हैं छोटे छोटे--